परसाद एक्स-रे क्लिनिक है। यहाँ पे जो एक्सा-रे किया जाता और बहुत लंबा और ऊंचा है। इधर ब्लैक कलर का गेट लगाया गया --

जैसे एक खिड़की है उसका रंग जो है भूरा कलर का है इधर एक बेड रखा हुआ रखा हुआ है जो बहुत अच्छा ल --

यहाँ पे एक आदमी जो सेल्फी खींच रहा है इसका माथे पे तिलक उ रेड कलर का इयरफोन रखे हुए है हाथ में बोतल भी है।

यहाँ पे एक मेला लगा हैगा जो बहुत अच्छा ही लग रहा देखने मे।

उधर एक सीढ़ी है उस पर एक एस.बी.आई. कार्ड लिखा हुआ ऊपर लाइट है जो रेड और भूरा कलर का --

तील से घिरा हुआ है और ऊंचा-ऊंचा बिल्डिंग भी नजर में आ रहा है। उधर एक--

ये जो पंडाल सजाया गया है वो ब्लू कलर और पीला कलर से और बहोत सारा कलर मिक्स --

इधर के जनरेटर लगा हुआ है बगल मे मतलब कुछ --

नव भारत टाइम ऐसे करके लिखा हुआ है मिनट भी है और बहुत सारा --

ये-ये महवीर भगवान का मूर्ति है और व्हाइट कलर से पेंट किया उधर इधर एक घं --

चार-पाँच मोटरसाइकिल लगा हुआ है दो साइकिल लगा हुआ है। यहाँ पे लोग बैठे हुए --

यहाँ एक पुस्तक भंडाल है जो श्री हिंगलाज --

कुछ सेल्फ़ी भी घिच रहे है कुछ पैदल भी चल रहे है एक बच्चा जो पीला कलर --

यह एक पेट्रोल पंप है जो भारतीय पेट्रोलियम कहा जाता।

यहाँ एक रेलवे स्टेशन है जो दो पटरीस पे है ये बहुत अच्छा --